ये देखिए यहाँ पे अभी थैंक यू का आप्शन ही नहीं आया कब से कर रहा हूँ मैं मैं तो बहुत परेशान हो रहा हूँ इसने अपनी जिम में है इसने अपनी फोटो क्लिक की है देखिए काफी अच्छी बॉडी बनी हुई है इसकी देख सकते हैं आप काफी बढ़िया लग रहा है देखने में।

देखिए यहाँ पर कैसा लग रहा है काफी बढ़िया और देखते रहिए कैसा लगेगा आपको देखना।

कैसा लग रहा है आपको काफी बढ़िया है देख सकते हैं आप इन लोग को कितना अच्छा लग रहा है देखने में जो की बहुत शानदार और सुपर है एक यहां पर--